और बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं और कुर्सियां भी रखी हुई है।

पक्षियां है और इनमे से कुछ हरे रंग के है और कुछ यहाँ पे -----

इनके लिए दाने भी रखे हुए हैं खाने के लिए ---

पैरों को मोड़ा हुआ है एक और ---

पेड़ पौधे दिख रहे है बहोत बड़े बड़े ----

और मेहरून कलर की है यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ पे रोड दिख रही है रोड के किनारे किनारे--

बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

और रखे हुए हैं मतलब अल्मारी पे जैसे बना हुआ है उस पे रखे गए हैंमेज पे भी रखे गए हैं।

यहाँ पे काफी सारे दुकानें हैं फूलों की--

और रात का टाइम है सभी बसें खड़ी हैं कोई भी इधर उधर नहीं जा रही है।

और यहाँ तीन लड़के हैं जो खड़े हैं और एक आदमी हैजो बैठा हुआ है।

सामने बड़ा सा बिल्डिंग है ओर बिल्डिंग के ऊपर--

बोहोत बड़ा मोल हैमोल में काफी सारे दुकान लगी हुई है।

सामने हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सेलोन है जो कि लड़कों का है।

सामने रोड है रोड के किनारे बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग नजर आ रहा है।

ओर बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है आसपास और धूप निकली हुए दिन का समय है।

ओर यहाँ किनारे मे लाइट लगा हुआ है बड़ा बड़ा ओर झण्डा है पीले रंग का।